जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी होगी। बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है। बहुत ही अच्छा और सुहावना लगता है देखने में।

पेट्रोल लाया जाता है। भारत पे भारत पेट्रोलियम पेट्रोल इस ट्रक से निकाल के जमीन के अंदर बना हुआ होडा में इस पेट्रोल को डाल रहा है ताकि सुरक्षित रहे।

यह एक स्कूल है। इस स्कूल में दो हजार के आस-पास लड़का लोग पढ़ाई करता है और इस स्कूल की बिल्डिंग बहुत ही आकर्षक है।

भजन गाने से मन को शांति मिलती है और अच्छा लगता है हर किसी को भजन गाना चाइये क्योंकि इनसे भगवान् प्रसन्न प्रसन्न होते है ।